अंदर बहुत ही तरह का इच्छुक इच्छुक व्यक्ति मिलेंगे।

ठीक है ये गोल पता नहीं कौन है स्टॉप ही होगा।

अअ दस रुपया का बीस रुपया का जितना का भी आ को चाहिए।